एक बोहोत बाद हॉल हे जिसमे हरे कलर का मेट बिछा हुआ हे ।

चारों तरफ कुछ लाइटे लगी है जो की छत मे फिट है एक पोस्टर है सामने जिसमें एक आदमी का चित्र बना है जो कि काले कलर का कोर्ट पहनया हुआ है।

उसके सामने एक नीले कलर का एक पट्टी रखा है जो काफी पतला है उसके पीछे कुछ दिवाल हैं।